पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और एक पानी में चल रही किश्ती दिखाई दे रही है।

काफी बंद पैकेटोंमें नज चीजें नजर आ रही हैं।

जिसमें से मैगी बूस्ट मीट मसाला --

इस तस्वीर में हमें एक--

अपनी वर्दी में नजर आ रहे हैं।

जिसमें वो एक बड़ी चट्टान पर खड़ा है।

इसके अलावा पीछे शात्र दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे हस्पताल में पड़े दो बेड --

इस तस्वीर में हमे एक सफेद दीवार पर लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड नजर आ रहा है।

एक औरत दिखाई दे रही है।

जिसको लकड़ी से कलाकारी करके बनाया गया है और इसका रंग--

इसके ऊपर एक बैनर भी नजर आ रहा है।

जिसने गोल्डन एवं लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

एक टंकी पर एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

चार व्यक्ति इस इमारत के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा हैं।

बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें--